गाड़ियाँ खड़ी हैं जोकि वाइट कलर की और--

के बाहर शीशे का गेट लगे हुए है अंदर--

लिखा हुआ है महादेव ढाबा कुछ खाने की तस्वीर बनी हुई है प्लेट बनी हुई है बाहर एक गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की।

और एक रिसेप्शन है मेज है जिसके साथ में बहोत सारी कुर्सियां रखी है बैठने के लिए--

यहाँ बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए है और काम करने लगे हैं। कुछ किताबे रखी हुई हैं।